यह एक बड़ा मंदिर है जिसमें बहोत सारे लोग दर्शन करने आए हैं।

यह एक बड़ा घर है घर के सामने एक व्हाइट कलर का गाड़ी लगा हुआ है घर के सामने एक बिजली का पोल भी है और छोटे-छोटे गाछी भी है।

यहां एक बहुत बड़ा पहाड़ है पहाड़ पे झरना भी है बहुत सारे गाछे भी दिख रहे हैं।

मुर्गा को दाना भी डाला गया है।

यह एक बहुत बड़ा शादी का पंडाल है जिसमें बहुत सारे लोग आ आये है कुछ खड़े है तो कुछ बैठे हैं आ बहुत सारा चेयर भी लगा हुआ है।

एक तरबूज भी है गोभी है केला है एक डालियां में समान भी रखा हुआ है।

यह एक खिलौने के दुकान हैं खिलौने के दुकान के अंदर बहुत सारे खिलौना रखा हुआ है रैक में एक आदमी खड़ा हुआ है जो पीला कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यह एक चर्च है चर्च के अंदर तीन लोग हैं।

साइड में बहोत सारे लोग हैं।

यह एक वाहन प्रदूषण दुकान हैं।

दुकान के बाहर एक मोटरसाइकिल लगा हुआ है दुकान के अंदर दो लैपटॉप है जो रैक पर रखा हुआ है।

बहुत सारे बैलून टंगा हुआ है कुछ बैलून उपर है तो कुछ नीचे है।

बाहर फूल से सजाया गया है बहुत सारे लाइट बत्ती भी लगे हैं।

एक बड़ा सा हॉल है हॉल के अंदर बहोत सारी चेयर लगी है जिसपे आदमी बैठा हुआ है।

लाइट भी लगा हुआ है फैन भी लगा हुआ है कुछ लोग बात कर रहे तो कुछ खरे है।